ये बहुत बड़ा मार्केट दिखाए है।

एक पेड़ है और घर है बहुत सारा।

दुकान है बहुत सारा दुकान है।

इस तस्वीर में दिख रहा है एक घर।

दो चार आदमी खड़े हैं वो--

और मोबाइल है जैसे की बेस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक् का सामान है।

एक ब्रेंच पर रखा हुआ है ।

घर बहुत बड़ा है।

और बहुत अच्छे मंदिर हैं।

ऊपर में खड़ा एक आदमी--

की तस्वीर में दिख रहे की।

औरअच्छा से लग गया है बंदे--

इस तस्वीर में दिखाया गया है की बहुत सारे मुर्गी है देशी मुर्गी--

बहुत सारे सीढ़ी लगा हुआ है तीन चार गो आदमी खड़ा है।

और आदमी चार पांच छह सात आदमी खड़े हैं तीन चार औरत खड़े हैं।

ये शर्ट है काला और--

सोनी कंपनी का और--

कलर का उसका पीछे बहुत सारे।

इस तस्वीर में दिख रहा है कि घर घर में अलमारी है अलमारी पे--

और बहुत घास दिख रहा है पेड़ पौधे--

इटा सभी दिख रहे है रे बहुत सारे।

पेन का दुकान है कलम का टेबल पर रखा हुआ है।

नीचे में बहुत सारी सजावट गया है।

बहुत सारे झंडा ग्राउंड के बाहर में--

गाड़ी घोड़े बहुत सारे--

बैठने वाला टेबल है।

बहुत सारा बच्चा है बच्चा का ड्रेस है सफेद।

पेड़ पौधे चार पांच आदमी दिख रहे--

घर में लिखा है मथुरापुर।